यह हम देख रहे हैं की एक नृत्य की मंच के ऊपर नृत्य कर रही है। यह एक विद्यालय में हो रही कार्यक्रम इस तरह की कार्यक्रम हमारे विद्यालय में भी हुआ करती थी।

यह किसी विद्यालय में होने वाले कार्यक्रम हैं। इस तरह का कार्यक्रम हमारे घरों के आस-पास के वाले विद्यालयो में भी हुआ करती है और ऐसे कार्यक्रम में बहुत से बच्चे हिस्सा लेते हैं।

तस्वीर में हम बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा देख पा रहे हैं। इस स्थान पर बहुत से व्यक्ति आकर स्थित है।

यह हम जो गाड़ियां देख पा रहे हैं एवं यहाँ पर बहुत से व्यक्ति भी मौजूद हैं। यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर गाड़ियों की मरम्मत चल रही है।

यह एक टोटो की लगी हुई कतार है। यहा पर बहुत से टोटो खड़े हैं। ऐसे घर ऐसे टोटो हमारे घर के आस-पास भी चलते हुए देखे जाते हैं।

और इन ए_टी_एम मो से बहुत से व्यक्ति पैसे उठाने के लिए जाया करते हैं।